यह पत्थरो से बनी गुफाओ की बीच की तस्वीर दिखाई दे रही है इसमें एक व्यक्ति खड़ा हुआ है नीचे की और कचरा पड़ा हुआ है।

स्टेशनरी की दुकान दिख रही है इसमें एक केल्क्युलेटर भी है गोंद है पेन है पेन्सिल है और गम है।

दे रहा है दो लोग नीचे की और दबे हुए जो ऊपर हाथ दिखा रहे है कजी की पत्थरो पर--

टोपी लगाई हुई है लाल और हरी कलर के मैट नीचे बिछी है पीछे की और पीले कलर बसे खड़ी हुई है।